और उनके सामने एक बड़ा सा पेड खड़ा हुआ है लंबा और उसके भी जस्ट सामने एक और ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर लिखा हुआ है ओप्पो शुद्ध वैष्णव आर एल शर्मा ढाबा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर --

और जो आदमी बाल कटवा रहा है वो फोन पर बात कर रहा है।